यह एक दुकान का दृश्य है।

तथा उसके कपड़े का कलर ब्लू एवं व्हाइट कलर के चेक शर्ट तथा ब्लू कलर के जींस पहने हुए।

या एक लाइब्रेरी का दृश्य है।

जिसके ऊपर हेडफोन एवं अनेक प्रकार के सामाने दिखाई दे रही है।

इसकी दुकान के बाहर एक स्प्लेंडर बाइक दिखाई दे रहे हैं जो काला कलर की है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

जिसके अंदर कैमरा एवं माउस तथा अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।

यहां लकड़ी के मदद से बहुत सारे टेबुल रैक बने हुए हैं।

तथा यहां पर फाइव जी का टावर भी दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कपड़े बिछाए हुए हैं।

यहां पर औरत लोग ब्लू एवं पर्पल कलर के बनारसी साड़ी पहनकर आई हुई है।

तथा यहां पर निप्पो का बैटरी भी टंगा हुआ है।

तथा यहां पर एक स्कैनर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक लड़की और उसके पापा आए हुए हैं।

इसके टेबुल में अनेक प्रकार की सामान्य दिखाई दे रही है।

तथा इसके दीवाल में व्हाईट कलर की वॉल पुटी किया गया हैं।

जो वाइट एवंम काला दिखाई दे रहा है।

जो एक काला एवं व्हाईट कलर की कपड़े पहनी हुई है।

यहां पर बहुत सारे कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर का दृश्य है।

यहां पर तीन टायर दिखाई दे रहे हैं।

जिस में पिंक लाल और स्काई कलर किया गया है।

यहां पर बहुत सारे अनेक प्रकार के कार एवं वैन दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के एंगल के मदद से इसके सीलिंग बने हुए हैं।

लोहे के एंगल के मदद से इसके खिड़की बने हुए हैं जो वाइट कलर की पेंट किया गया है।

जिसके ऊपर फोर जी का लोगो लगा हुआ है।

यह एक ट्रैक्टर का दृश्य है।

यहां पर बहुत सारे बोरे में सामान रखे गए हैं।

यहां पर बहुत सारे ए_सी तथा वाशिंग मशीन और छोटे छोटे डब्बे में आयल दिखाई दे रहा है।

यह एक हवाई अड्डा का दृश्य है।

इसके सीलिंग में प्लाई बोर्ड के मदद से बने हुए हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

यह दूर में दो पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कार कैफे का दृश्य है।

जो काला कलर के दिखाई दे रहे हैं।